और यहाँ पे तीन स्टेचूस रखें हुए हैं जोकि अ कोर्ट पहने हुए और शर्टस् पहने हुए हैं।

ये सामने एक इमेज दिखाई दे रही है और जिसमे बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

एक बेड लगाये हुए और वो क्या कर रहा है। वो सामने एक मिरर लगा हुआ है और तो उसमें वो फोट क्लिक कर रहा है और एक व्यक्ति बैठा भी हुआ है जो कि अब फ़ोन चलाने में व्यस्त है और ये शायद ये पार्लर है मेंस पार्लर है।

ये जो सामने जो इमेज दिखाई इससे क्लियरली पता चल रहा है इसमें क्यूंकि बाहर जो है वो एस.बी.आई. टैग भी लगा हुआ है यानि एस.बी.आई. का ए.टी.ऍम. है ये --

ये एक ए.टी.एम्. मशीन है और एक व्यक्ति भी नज़र आ रहा है जो कि पैसे निकाल के आया है और एक व्यक्ति अन्दर है जो कि पैसे निकालने गया है तो ये एक ए.टी.एम्. मशीन है जहाँ पे अगर बैंक बंद भी तो हमलोग ए.टी.एम्. से पैसे --